और बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं। अं खंबा भी दिख रहा है।

एटीएम है यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं लाईन लगा के | यहाँ पे बहुत सारी बाइक दिख रही हैं साइकिल भी दिख रही है | एक शटर दिख रहा ब्लैक कलर का जो बंद है।

यहाँ पे डिस्को लाइट भी दिख रही है। यहाँ पे वा वाइट और पिंक कलर के परदे लगे हुए हैं। वाइट कलर की कुर्सी रखी हुई है। यहाँ पे पिंक वाइट कलर के फ्लावर भी लगे हुए हैं।

यह मछलियों की दुकान है यहाॅं पे मछलियाॅं बेची जा रही हैं बहुत सारी मछलियाॅं रखी हुई हैं छोटी-बड़ी बोहोत बड़ी-बड़ी मछलियाॅं भी हैं।

हॉस्पिटल है यहाँ पे दो डॉक्टर बैठे हुए है| पैशन्ट का आ मशीन से टेस्ट कर रहे है।

यह एक सैलून है यहां पर एक लड़का बैठा हुआ है जो हेयर कट करवा रहा है और दो लड़के खड़े हुए हैं एक लड़का फोन से दूसरे लड़के की फोटो क्लिक कर रहा है एक लड़की बैठी हुई है।

यहाँ पे एक चेनल गेट दिख रहा है स्लेटी कलर का और पेड़ दिख रहे हैं। एक फेन दिख रहा है।

यहाँ पे बहोत सारी लड़कियाँ रंगोली बना रही हैं। रंगोली कलर ग्रीन ब्लू रेड वाइट येल्लो कलर से बना रही हैं।

बोर्ड रखे हुए हैं। ऊपर छत पे टी --